पौधा खुली हवा मे साँस लेते है जोकि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक --

फंकशनस बिना गानों के कोई भी फंकशनस अधूरा माना जाता है इसलिए इन गानों का उपयोग किया जाता है।

इसमें लोग लाइन से बैठकर खाना खा रहे हैं और कुछ लोग उन्हें खाने दे रहे हैं कुछ सफाई कर रहे हैं। इस तरह से सभी अपना योगदान दे रहे हैं।